और गाक्षी-वृक्ष लग रहा है और पोखर में हरा घांस लग रहा है जहाँ पर खेत पानी हो रहा है और लोग सब --

एक दो जेंट्स है जहाँ --

बैठे हुए है एक खड़ा हुआ है एक बच्चा भी है।

और चारो बगल से फूल लग रहा है काते-काते और एक पेड़ --

काते-काते हरा है बीच में पीला है उजला हैं।

यहाँयहाँ पर देख रहे हैं एक हॉस्पिटल है बहोत दूर में है बहोत फील्ड भी है।

और हरा-हरा पीला गाक्षी-वृक्ष लगा हुआ है फूल भी लग रहा है लगा हुआ है।

जहाँ पे शादी उदी भवन जिसे बोला जाता है वहीं हमको दिखने से लग रहा है जो बहोत खबसूरत लग रहे।

जहाँ पे वायलिन - उईलन भी लगा हुआ है यहाँ पे तीन जेंट्स भी बैठे हुए हैं देख --

गैरेज में लगा हुआ है एक गाड़ी बनाने के लिए देखने में इसका नक्सा बहोत ख़राब इसका नक्सा लग रहा है।

जो पूरा टूटे-उटे है पूरा बोहोत --

यहाँ पे हम देख रहे हैं बहोत फील्ड है उसमें घर भी बना हुआ है।

उसे टेबल पर एक प्लेट में कॉफी रखा हुआ है दो कप में कॉफी रखा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे हम देख रहे हैं लक्स कोई ऐथी भी हो रहा है | यहाँ पे कोई नाटक-उटक हो रहा है जिनमे दो लड़की और दो लड़का बै --

एक लड़का खड़ा है इ एक डॉक्टर है एक डॉक्टर है एक लड़का का चेक कर रहा --

टेबल भी लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल है। बहोत सारा चेयर हैं यहाँ --